इनका रंग काला है और एक शीशा भी लगा हुआ है यहां पर--

यहां पर बहोत सारी मशीनों से एक लोहे की चीज को एक ट्रक पर चढ़ाया जा रहा है।

और यहां पर हरे रंग के पेड़ पौधे भी हैं और ये --

यहां पर एक पिज़्ज़ा बनाने की दुकान है जहां बाहर लिखा हुआ है रॉयल पिज़्ज़ा।

यहां पर एक सुंदर सा एक शॉपिंग की दुकान बनी हुई है।

यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

लाइटें चल रही हैं और रात का समय हो रहा है।

जो कि अभी तक खाली है।

यहां पर दो ए_सी भी लगे हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा हरे रंग का ग्राउंड बना हुआ है।

इनके नीचे नील और लाल रंग के मैट बिछे हुए हैं।

इसके बीच में गुलाबी रंग के फूल भी लगे हुए हैं।

हा पर एक धागे से बना हुआ जाल बिछा है यह --

जो कि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं।

यह छत पर यहां पर पीछे की ओर एक टावर भी लगे हुए हैं।

यहा पर हरे रंग का ग्राउंड भी है जहा पर हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं।